में एक गूगल पे का क्यू_आर कोड भी दिख रहा है।

इस कमरे में एक ट्यूबलाइट भी जला हुआ है।

ट्रैक्टर के सामने एक पेड़ दिख रहा है।

पीले और लाल रंग की घड़े भी दिख रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक दुकान के अंदर का तस्वीर प्रस्तुत किया गया है।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

खेलकूद सामग्री में अलग अलग कार्टून भी मौजूद है।

दो व्यक्ति दिख रहे हैं एक व्यक्ति ने हेलमेट परिधान किया हुआ है और उसके गले में एक मेजरिंग टेप भी दिख रहा है।

इस कमरे का रंग सफेद और हल्का पीला पेस्टल कलर है।

इस तस्वीर में हमें एक दुकान दिख रहा है।

दुकान के सामने टेबल और चेयर रखा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें एक सड़क दिख रही है।

सड़क के किनारे एक लाल रंग की दीवार दिख रही है।

कुछ महिलाएं हाथ जोड़कर नीचे बैठे हुए हैं।

ऊपर से कई सारे घर इमारतें भी दिख रहे हैं।

चित्र के सामने बहुत मिट्टी दिख रही है और इसका रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें दो टेबल दिख रही है और आठ कुर्सियां दिख रही है ।

घाट पर हमें कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं।

एक दीवार पर हमें एक घड़ी दिख रही है।

घरों पर लाइट जली हुई है।

कुर्सीया भी दिख रही है।

इस तस्वीर में हमें कई प्रकार के फूल दिख रहे है।

इस तस्वीर में हमें कुछ लोग नदी के किनारे जाते हुए दिख रहे हैं।

कुछ व्यक्ति दुकान के अंदर बैठे हुए हैं।

इमारत के सामने हमें दो गाड़ियां और एक मोटरसाइकिल दिख रही है।

ये इमारत धुसर रंग का दिख रहा है।

इमरत के नीचे वाले माले पर एक व्यक्ति भी दिख रही है।